यह फोटो हमें एक हेयर कटिंग सैलून का लग रहा है और यहाँ पर एक काउंटर है वहाँ पर नाम लिखा हुआ है ओनर का और उस के ऊपर गुब्बारों से सजावट की गई --